यहाँ मुझे एक बहोत बड़ा सा जो है सब्जी मार्केट दिखाई दे रहा है यहाँ पर ज़्यादातर सब्जिया जो हैं नीचे बोरों में रखी गई है ढेर के ढेर जो के काफि अच्छी लग रही है फ्रंट मे मुझे मिर्चीया दिख रही है।

और उसके ऊपर काफी सुंदर सा जो है डेजर्ट रखा हुआ है जो की चटनी के साथ सर्व किया गया है और बीच में सैलेड दिया हुआ है को भी डिलिसिउस लग रहा है।

यहाँ समाने मुझे एक वॉल दिखाई दे रही है जो कि सिल्वर कलर दिख रही है इसपे छोटी-छोटी काफी सुंदर-सुंदर सी जो है मूर्तियों को डिज़ाइन से उकारा गया है।

यहां पे मुझे काफी सारी जो है पेन पेंसिल्स और बुक्स वगैरा है वो दिखाई दे रही है कुछ स्केच कलर इरेजर्स भी दिख रहे हैं।

यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा-सा जो है फ्रन्ट में टेबल दिख रहा है। टेबल के ऊपर एक पी.सी. माउस कागज पैन स्टेपलेर दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे एक बहुत ही सुंदर सी दुकान दिखाई दे रही है ये दुकान पूरे वाईट एंड ब्लू कलर से पेन्ट की गई है।

यहाँ मुझे बहुत सुंदर-सा स्टेज दिखाई दे रहा है। स्टेज का बैकग्राउंड ग्रीन कलर के पर्दो से सजाया गया है। सामने से जो है --

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा-सा जो है इस बिल्डिंग या घर दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक लाइन से पूरी दुकाने है जो की अभी बंद है।

पहाड़ के एंट्री गेट पे हमें दो शेर दिखाई दे रहे है और दोनों साइड कुछ मूर्तियां डिजाइन की गयी है।

यहाँ पे मुझे एक बच्चा दिखाय दे रहा है जिसके हाथ में पाइप है वो पाइप से पेड़ो को पानी दे रहा है।

दुकान में एक लेडी भी है और ये पूरा व्यू बहोत ही अच्छा लग रहा है।

और एक बड़ा-सा मुझे हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है और एक इन्सान खड़ा।